आगे की ओर बड़ा फ्रिज दिखाई दे रहा है एक लड़का भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर की ओर से रोशनी आ रही है जोकि इसमें घर में चार चांद लग रही है

इस घर में केवल एक अलमारी दिखाई दे रही है कुछ बोतल पड़ी है अलमारी जो की काले कलर की और सफेद कलर की है और ये --

कुछ एक बड़ा थरमस टाइप भी बड़ा रखा गया है जोकि बड़ा--

इसमें एक व्यक्ति इधर से उधर की ओर जा रहा है और कुछ बच्चे है जो की --

इस फोटो में काफी सारे कलरिंग वगैरह दिखाए गए हैं और वाइट कलर का बड़ा घर दिखाई दे रहा है एक बोर्ड भी है जिस पे कुछ लिखा गया है।

ट्रेवल्स एजेंसी का नाम लिखा गया है और इधर कुछ उर्दू में लिखा गया गेट कांच का लगाया गया है जो कि काले कलर का दिखाई दे रहा है ऊपर भी कुछ पोस्टर लगाया हुआ है।

का भी नाम है अनीच बाहर की ओर बाइक वगैरह खड़ी है और यह फोटो रात के टाइम लिया गया है एक

पौ पत्थर हैं जोकि पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं दिखने में अलग मैजिक टाइप लग रहा है लेकिन बहोत ही शानदार और अच्छा --

कुछ ऊं कांच के अंदर कुछ बोतले वगैरा भी अंदर रखी गई हैं और बाहर स्कैनर भी लगाया गया है।

इससी है कोई होटल का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें खाने पीने का समान है और लाइटे लगी हुई है ऊपर पंखा चल रहा है।

त्रिपाल बिछाए हैं एक महिला है जो इधर मास्क लगा के बैठी हैं कुछ मछलियां काफी अलग-अलग डिजाइन की वैरायटी की नीचे अलग-अलग जिन्होंने अपने ऊपर --

और वाइट कलर की बनाई हुई है इनके कुछ नाम भी लिखे हैं कुछ अंक भी लिखे गए हैं।